इ रिक्शा पर सड़क पे लोग चल रहे हैं। गाड़ी मोटर लोग अ बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहल बा।

बहुत जल्द हो जाएगी |

बहुत सुंदर दृश्य हो रहल बा।